नमस्कार जमोल एप्लीकेशन में क्रिएट एंड एडिट मॉलिक्यूलर मॉडेल्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे आणविक मॉडल में हाइड्रोजन परमाणु को फंक्शनल ग्रुप से बदलना
बॉन्ड्स को जोड़ना और मिटाना
परमाणुओं को जोड़ना और मिटाना
और सीखना कि पॉप अप मेन्यू जिसे कन्टेक्स्चूअल मेन्यू भी कहते हैं कैसे प्रयोग होता है
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको निम्न के साथ परिचित होना चाहिए जमोल एप्लीकेशन विंडो और मॉडेलकिट फंक्शन जो आणविक मॉडल्स को बनाने में प्रयोग होता है
सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टु ओएस वर्जन 1204 जमोल वर्जन 1222 और जावा वर्जन 7
जमोल एप्लीकेशन खोलने के लिए दश होम पर क्लिक करें
सर्च बॉक्स में टाइप करें जमोल जमोल आइकन स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है
जमोल एप्लीकेशन विंडो खोलने के लिए जमोल आइकन पर क्लिक करें
अब प्रोपेन के मॉडल के साथ शुरू करते हैं जो हमने पहले ही बना लिया था
फाइल खोलने के लिए टूल बार पर ओपन फाइल आइकन पर क्लिक करें
स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स दिखता है
उस फोल्डर पर क्लिक करें जहाँ हमारी फाइल है
मेरी फाइल डेस्कटॉप पर स्थित है
अतः मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करुँगी और ओपन बटन पर क्लिक करुँगी
फाइल ओर उर्ल टेक्स्ट बॉक्स में फाइल का नाम टाइप करें
फिर ओपन बटन पर क्लिक करें
स्क्रीन पर प्रोपेन का मॉडल दिखता है
हम प्रोपेन के हाइड्रोजन्स को निम्न फंक्शनल ग्रुप्स के साथ बदल सकते हैं हाइड्रॉक्सी अमीनो हैलोजन्स जैसे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और अन्य
इसको प्रोपेनॉल में बदलने के लिए मैं प्रोपेन अणु में हाइड्रॉक्सी ग्रुप जोड़ना चाहती हूँ
मॉडेल किट मेन्यू खोलें
यहाँ फंक्शनल ग्रुप्स की एक सूची उपलप्ध है
ऑक्सीजन परमाणु के सामने वाला बॉक्स जाँचें
पहले कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु पर क्लिक करें
ध्यान दें कि हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रॉक्सी ग्रुप से बदला गया है
यहाँ ऑक्सीजन परमाणु लाल रंग में दिखता है
अब प्रोपेन 1 प्रोपेनॉल में बदल गया है
अब 1 प्रोपेनॉल को 2 chloro 1 प्रोपेनॉल में बदलने की कोशिश करें
मॉडेल किट मेन्यू से क्लोरो ग्रुप सिलेक्ट करें
दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु पर क्लिक करें
अब हमारे पास 2 chloro 1 प्रोपेनॉल का मॉडल है
यहाँ क्लोराइन हरे रंग में दिखता है
आप एनर्जी मिनिमाइज़ेशन कर सकते हैं और इमेज को डॉट मोल फाइल में सेव कर सकते हैं
यहाँ एक नियत कार्य है
निम्न अणुओं के मॉडल्स बनायें
3 bromo 1 बुटानोल और 2 amino 4 chloro पेंटाने एनर्जी मिनिमाइज़ेशन करें और इमेज को जेपीईजी फॉर्मेट में सेव करें
भिन्न फाइल फॉर्मेट्स में इमेज सेव करने के लिए टूल बार में सेव करेंट व्यू एएस एएन इमेज आइकन प्रयोग करें
आपका पूर्ण नियत कार्य निम्न प्रकार दिखना चाहिए अब जमोल एप्लीकेशन विंडो पर जाते हैं
जमोल एप्लीकेशन एक pop यूपी मेन्यू भी देता है
आप दो भिन्न मेथड्स से pop यूपी मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं
मॉडेल किट मेन्यू को एग्ज़िट करें अगर यह खुला हो
मॉडेल किट मेन्यू पर नीचे जाएँ और एक्सिट मॉडेल किट मोडे पर क्लिक करें
pop यूपी मेन्यू को खोलने के लिए पैनल पर माउस बटन पर राइट क्लिक करें
पैनल पर pop यूपी मेन्यू दिखता है
परमाणुओं के प्रदर्शन में रूपांतरण के लिए pop यूपी मेन्यू अनेक फंक्शन्स देता है
इसमें अनेक प्रकार के सिलेक्शन और प्रस्तुतीकरण विकल्प होते हैं
इस मेन्यू में ज़्यादातर फंक्शन्स मेन्यू बार में डुप्लीकेट होते हैं
pop यूपी मेन्यू में आइटम्स स्वतः स्पष्ट होते हैं
इनको विस्तृत विवरण की ज़रुरत नहीं होती है
pop यूपी मेन्यू को एग्ज़िट करने के लिए जमोल पैनल पर क्लिक करें
pop यूपी मेन्यू को एक्सेस करने का दूसरा तरीका जमोल लोगो पर क्लिक करना है
यह जमोल पैनल के नीचे दायें कोने पर स्थित है
अब देखते हैं कि इस अणु को कैसे एडिट करते हैं और इथेन अणु में बदलते हैं इसके लिए हम हाइड्रॉक्सी ग्रुप क्लोरीन ग्रुप कार्बन और दो हाइड्रोजन परमाणुओं को मिटायेंगे
मॉडेल किट मेन्यू खोलें
डिलीट अतोम के सामने वाले बॉक्स को जाँचें
उन परमाणुओं पर क्लिक करें जिन्हें आप मिटाना चाहते हैं
ऑक्सीजन क्लोरीन और कार्बन परमाणु
एक इथेन अणु बनाने के लिए हमें इस अणु में हाइड्रोजन्स जोड़ने हैं
मॉडेल किट मेन्यू में एड हाइड्रोजन विकल्प पर क्लिक करें
अणु पर दो हाइड्रोजन परमाणु जोड़े गए हैं
अब हमारे पास स्क्रीन पर इथेन का मॉडल है
अब सीखते हैं एल्केन्स और एल्काइन्स कैसे बनाते हैं
अणु में डबल बॉन्ड बनाने के लिए मॉडेल किट मेन्यू खोलें
डबल विकल्प के सामने जाँचें
इथेन अणु में दो कार्बन परमाणुओं के बीच के बॉन्ड पर कर्सर रखें
कार्बन परमाणुओं के चारों ओर लाल रंग की रिंग्स दिखाई देती हैं
बॉन्ड पर क्लिक करें
ध्यान दें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल गया है
हमारे पास पैनल पर इथीन का मॉडल है
अब इथीन को इथाइन में बदलते हैं
मॉडेलकिट मेन्यू पर क्लिक करें और ट्रिपल विकल्प के सामने क्लिक करें
इथीन अणु में डबल बॉन्ड पर कर्सर रखें और इस पर क्लिक करें
डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में बदल जाता है
यह इथाइन का मॉडल है
अधिकतम स्थिर कान्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए एनर्जी मिनिमाइज़ेशन करें और सेव करें
अब इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न करना सीखा एल्केन्स में हाइड्रोजन परमाणु को फंक्शनल ग्रुप के साथ बदलना
एल्केन्स को एल्कीन्स और एल्काइन्स में बदलने के लिए बॉन्ड्स जोड़ना
परमाणुओं को जोड़ना और मिटाना और Pop up मेन्यू उपयोग करना
नियत कार्य में 2 fluoro 13 ब्यूटाडीन और 2 पेंटाइन के मॉडल्स बनायें
मॉडल के प्रदर्शन को वायरफ्रेम मे बदलने के लिए pop यूपी मेन्यू प्रयोग करें
एनर्जी मिनिमाइज़ेशन करें और इमेज को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करें
आपका पूर्ण नियत कार्य निम्न प्रकार दिखना चाहिए
इस उर्ल पर उपलब्ध वीडियो देखें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
अधिक जानकारी के कृपया contactspoken tutorialorg को लिखें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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद